इनके आगे पीछे बोहोत सारे कपड़े एक ठे दीवारों के ऊपर कपड़ों की डिजाइन बनी हुई है और उनके पीछे ब्लू कलर की बॉल रखी हुई है और इनकी बोटल --

बुक्स वर्ल्ड लिखा हुआ है और अंदर बहोत सारी बुके दिख रही हैं। इसके अंदर एक लड़का एक बुक खोल के खड़ा हुआ है।

अ केफे का बोर्ड हैं जो कि ऑरेंज कलर के ऊपर व्हाइट कलर की कुछ नि छिपके हुये हैं। कुलन केफे करके नाम --

इस इमेज में एक बड़ा सा ग्राउन्ड दिख रहा है। इस ग्राउन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में एक व्हाइट कलर का बहोत बड़ा भवन बना हुआ है और इस ग्राउंड में नीचे ब्लैक कलर की कार खड़ी है। कार के लेफ्ट साइड में ए एक मूर्ति बनी है। मू --

उसके राइट साइड में एक पेप्सी की स्टिकर भी लगा हुआ है और सामने दीवार पर अमूल स्टोर लिखा हुआ --